चर्च में से दो लोग बाहर आ रहे हैं।

नदी के साइड में कच्ची मिटटी भी दिख रही है।

उसमे भी कुछ ना कुछ सामान है।

ऊपर आसमान है सामने कुछ --

एक मस्जिद है मस्जिद के ऊपर हरा कलर है मस्जिद की दीवारे सफ़ेद कलर की हैं।

टेबल और कुर्सियाँ एक लाइन में रखी हुई हैं।

स्कुल का कोरिडोर है। कोरिडोर के ऊपर टीन का सेड बना है।

जेकेट पेहना है ऑरेंज कलर का जे.सी.बी. दिख रही है ऑरेंज कलर की जे.सी.बी. मिट्टी भर रही है।

एक स्टेडियम का गेट दिख रहा है गेट बंद है।

एक कोचिंग क्लास का कमरा है कमरे में बहुत सारे --

सफेद कलर का शर्ट पहना है उसने गले में --

एक सब्जी की दुकान है दुकान के अन्दर बहुत सारी अलग-अलग तरह की सब्जियाँ रखी हैं।

कांच लगे हुए हैं अन्दर दो पुतले दिख रहे हैं पुतलो के ऊपर कपड़े पहनाए हैं।

पास मे दो लड़कियां खड़ी दिख रही है झाड़ है।

लोहे का सरिया दिख रहा है पीछे का लाइटिंग लगी है पीले कलर --